एक टंकी रखी है येलो येलो और कत्थई कलर की पाइप है ईंट गिट्टियाँ पड़ी हुई है पत्थर पड़े हुए हैं पीछे साइड घर है दीवार है पेड़ लगे हुए है।

नदी है नाव है नाव मे बहुत सारे लोग बैठे हुए है उ साइड पहाड़ है बहुत दूर-दूर तक पानी ही नजर आ रहा है हेए --

फूलों की मालाये भी उसके हाथ में पीछे साइड पोस्टर लगा हुआ एक ब्लू कलर का पर्दा लगा हुआ है ये पंखा लगा हुआ है वाइट कलर का

पर्दे लगे रहे हैं आजु-बाजू मे लोग है वाइट कलर की दीवार है वाइट कलर का दीवार है स्टेज का कलर का रेड है पंख --

इस चित्र मे हमे एक मंदिर दिखाई दे रहा है वो व्हाइट कलर की दीवारे पंखा पंखे का कलर व्हाइट है घड़ी भी लगी है एक मंदिर शौल्फ मे एक ब्लैक कलर का पंखा है ऊपर--

बाल्टीया लगी है लाइटे जल रही है छोटी-छोटी खिड़कियाँ है आजू-बाजू मे ब्लैक कलर से बना हुआ है एक बाहर साइड कुछ टंग रहा है।

दरवाजा है ब्लैक कलर का एक बंद है एक खुला हुआ है बाहर साइड बहुत सारे पेड़ हैं पंखे लग रहे एक बैठने की जगह है सीढ़ियां यें हैं।

हां लाइटें लग रही है ऊपर बटने हैं लाइटों की नीचे पोस्टर टंग रहे हुए हैं।

इस चित्र मे हमे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जहां पे रेड कलर की कुर्सियां रखी है टेबल रखी है व्हाइट कलर की अलग-अलग कॉर्नर पर अलग-अलग कुर्सियां टेबल रखी हुई है।

हमें हमें एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जो की बहोत बड़ा ग्राउंड है उसके आजू-बाजू में कुछ लोग है बहोत सारे पेड़ है बैठने की जगह है।